हरे भरे दिखाई दे रही है इसमें बहुत सारे गोभियां दिखाई दे रही है यह खेत बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा हरा है।

इतने सारे गेट और खिड़कियां हैं इसके ऊपर एक पानी की टंकी रखी हुई है इस पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगी हुई है।

ये शोरूम बहोत बड़ा है यहां पर बेंचे लगी हुई है और एक कंप्यूटर रखा हुआ है।

जो बहुत ही सुंदर फसल है इसके पास में एक रोड जा जा रही है और इस खेत के अंदर एक अडवा लगा हुआ है।

और ए_टी_एम से पैसे निकाल रहे हैं ए_टी_एम में एमरजेंसी में पैसे निकालने के लिए --

ये मशीनें मिल रहीं हैं और ये बोहोत हि बड़ा हॉल है यहां पर अलग अलग क्वालिटी में अलग अलग मशीनें मिल रही हैं।

और कुछ बड़े कप सभी प्रकार के मिल रहे हैं यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी खड़ा है।

कुछ लेडिस खड़ी हुई है जो एक सेम ड्रेस पहनी हुई है एक लेडिस इससे अलग है।

कुछ लेडीज बैठी हुई हैं और कुछ खड़े हुए हैं ये एक बहोत बड़ा प्रोग्राम है।

कुछ ड्राइंग बना रही है और मे कुछ मेम आई हुई है जो उनकी ड्राइंग को देख रही है।

यहां पर सभी प्रकार के जूस खाने के लिए आइसक्रीम सब प्रकार की वैरायटी के समान मिल रहे --

दो गाड़ियां खरी खड़ी हुई हैं कुछ बाइक हैं यहां पर कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं कुछ कैफे के अंदर है।

यह एक नाव है इस नाव में कुछ--

यह बहुत बड़ी बिल्डिंग है इसके बाहर गाड़ी खड़ी हुई है कुछ लोग खड़े हैं कुछ बाइक दिखाई दे रही है।